ये चर्च है जहा हम जहा जीजस की मूर्ति लगी हुए है प्लस की उष पे टैंक रखे है।

कई सारी हरी मिर्चा पड़ी हैं।

कूड़ा पड़ा है मोटा ककरा की बजरी पड़ी है खड़ी है पव्दो पड़ा है एक छोटो सो कुंड बना है पानी घाल बा ताई।

एक लाल कलर की बुलेट खड़ी है एक काला कलर की बुलेट खड़ी है तीन साइड में खड़ी है एक बुलेट साइड में खड़ी है उसमे काच भि लगा हुआ साम शोरूम का--

एक आदमी है जको हाथ में की मेल्यो है कॉपी सी जको दूसरा आदमी ने की समझा रहियो है।

वा के लार आदमी काम करिया है ऊपर धोली धोली लाईट जग रखी हे घनी सारी लाईट नीचे एक झूमर लटकायेडो हैं।

यह एक सोफा है झको लकड़ी का बनायेडा है लार लकड़ी का गेट है।

किताब पर लक्ष्मी जी महाराज गणेश जी महाराज की फोटोवा है बीजे बूम मेंस्प्रे पड़े है कलर का और भी सामान पड़ा है शुभ लाभ का स्टीकर पड़ा है।

ओ दिखे कने क्लास में टेबला पड़ी है कुर्सियां पड़ी है बांके नीचे।